बहुत अच्छे से लाइटिंग भी है गरेज में ।

और सभी लोग पार हो रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में।

और एक बोहोत -बोहोत बोहोत ही बड़ा ग्राउंड है।

और काफी बड़ा ग्राउंड भी है और काफी सारे आदमी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में और --

ध ध्यान रखा गया है और साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे।